यहां पर बोहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

डेकोरेशन की हुई नजर आ रही है।

यहां पर एक अस्पताल नज़र आ रहा है।

यह एक बेडरूम नजर आ रहा हैं।

टीचर फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं।

फिर तक मांग लगाई हुई नजर आ रही है।

यह एक शिमला का हेड ऑफिस नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई नजर आ रही है।

टैटू बनाने की दुकान नजर आ रही है।

डेकोरेशन नजर आ रही है।

तीन कुर्सियां नजर आ रही है।

बिल्डिंग का निर्माण होता हुवा नजर आ रहा है।

हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है।

लोग भागते हुए नजर आ रहे है।

सबके चेहरे पर ब्लर नजर आ रहा है।

यह एक रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

यहां पर एक गेट नजर आ रहा है।